आसमान दिख रहा है लोग दिख रहे है।

इसमे एक गाड़ी दिख रही हैं यहाँ पर पार्किंग रहा हैं मशीन दिख रही हैं।

ये बार दिख रहे है।